अअअ ऊपर के खाने में ब्लू ब्लू कलर के हैं और इसमें रेड कलर के बॉक्स हैं।

और इसमें मेरेको काफी सारे आं-फादर्स लाइन लाइन से अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह मेरेको एक कंस्ट्रक्शन का --

यह यह मेरेको एक अ-कुछ कारखाना सा नजर आ रहा है जिसमे काफी सारी चीजे हैं कई मशीन नजर आ रही हैं।

और इसकी पीठ में कोई देख रहें हैं कि कोई प्रॉब्लम है और यह रेड कलर का दरवाजा है ग्रीन कलर का इसकी वॉल है।

ये एक काफी बड़ी मशीन नजर आ रही है जैसे यहाँ पर कोई माल अ-माल बन रहा है या मशीन बिकती हैं।

एक ग्रे ग्रे कलर का स्टील का स्टील का अ-स्टील की मशीन है एक वाइट कलर की है जिसमे ब्लैक क-कलर का ढकन है।

और काफी बड़ा गेट है गेट है जिसके उम चार जिसके अ चारों ओर काफी दिवार काफी बड़ी दिवार है।

ये मेरको किसी कॉलेज का कॉलेज का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लड़के आ रहें हैं अ एक लड़की एक रेड कलर का --